सत्यमेव जयते का चिन्ह भी है यहाँ पे कुछ टेबल्स भी रखे गए हैं और यहाँ पे जहाँ जज बैठता है वह काफी ऊंचा है।

यहां एक स्टूडेंट है जो अपनी स्कूल ड्रेस में है यहां एक छोटा बच्चा है।

को पंडित जी पूजा कर रहे हैं।

और एक हनुमान जी के धाजे को भी रखा गया है।

उसमें एक लाइट है जो काफी अच्छी लग--

चार बच्चे हैं एक परी ड्रेस पहनी है और तीन आर्मी ।

यहां पे कुछ तार के कनेक्शन भी लगे हुए हैं यह काफी अच्छी लग रही है।